यह किसी ग्राउंड फ्लोवर का फोटो है जहाँ पर कुछ बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं।

फिरोजी कलर के कपड़े पहने हुए हैं पास में कुछ लोग बैठे हुए जो इनका मैच देख रहे हैं इनके पास इनके कोच खड़े हुए हैं।

यहां जिम का दरवाजा लगा हुआ है जिम के आसपास की दीवालें --

इसमें पिच इस फोटो में पीछे पहाड़ दिख रहा है और कुछ पुराणी इमारत जेसा दिख रहा है।

पढाई कर रही है और लड़के सभी एक रो में बेठे हुए है।

यह हवाई अड्डे के पास में एक झंडा लगा हुआ है वही उस झंडे के पास में एक पेड़ है पेड़ के आस पास --

बैठे हुए है बास्केट बॉल खेल ने लिए बच्चो के पास में जाली लगी हुई है।

रखी है और यहां पे दो कैमरे एक कैमरा लगा हुआ है पास में कुछ अलमारी वगैरा भी है।

पीछे भी आलमारी वगैरा दिख रही है वो दिन अ और ब्रेकर्स के पास वाली दीवाल व्हाइट कलर से पोती हुई है।

ट्रैक्टर के नी टेंप्लेट के जस्ट के नीचे एक टेबल है जिसके ऊपर कुछ लाइट का बोर्ड वगैरा लग रहा है।

ये किसी गार्डन का फोटो का हैं जहाँ पर एक झुला रखा हुआ हैं झूले में एक बच्चा झुला झूल रहा हैं पास में कुछ रेलिंग वगेरा--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

ए सि के निचे रेकर्स वगेरा बने है और शो के लिए और एक चेयर रखी हुई है।

और इनके पास मे एक सेल फोन रखा हुआ है बात करने के लिए लड़के के हाथ मे एक पेन है और नीचे कुछ कागच रखे हुए--

ये किसी मार्केट का फोटो लग रहा है जहा पर कुछ सब्जी के ठेले पानी पताशे का ठेला वगेरा लगे हुए ऊपर खुला आसमान है यहाँ पर एक लड़की--

मु पर कवर करके बात करते फोन में बात करते हुए जा रही है एक जिब खड़ी हुई है बाइक पर एक लड़का फोन पर बात करते हुए जा रहा है।

यह किसी ग्राउंड का फोटो है जहां पर बहोत सारे लोग--

यहा पे हम मोर्निंग का फोटो सनसेट का फोटो दिखे अ सनराइज का फोटो दिख रहा है जहा पर सूर्य उगता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह किसी कैफ़े का फोटो लग रहा है यहा पे बोहोत सारे लोग कैफ़े के अन्दर खड़े हुए है ।

बाहर एक टेबल रखी हुई है तीन चार लोग बाहर खड़े हुए है कैफे पे काफी भीड़ लगी हुई है।

काफी लोग नहा रहे हैं और नहाते हुए मजे ले रहे हैं यहां पर लोगों ने कपड़े सूखने के लिए भी डाल रखे हैं यहां का--

ये किसी फंक्शन का फोटो लग रहा है जहां पर तीन लड़के खड़े हुए हैं जो अपना--

एक साइड में बहोत सारी कार पार्क होई हुई पार्क खड़ी हुई है।

यहां पे बहोत सारे फूलों की दुकाने दिख रही है इसमें येलो कलर रेड कलर ग्रीन कलर से बहोत सारे फूल रखे हुए हैं।

इस फोटो में मुझे एसे मेल दिख रहा है जिसके बाहर ही सही बिल बिल्डिंग है ।

लाइट का खम्भा है बहर दो गाड़ी रखी हुई है कुछ साईकिल वगेरा भी रखी हुई है।

घोड़े के ऊपर लाइट लगी हुई है दोनो घोड़े अपने अलग अलग--

जगह पर बंधे हुए घोड़ों के अस्तबल के पास में कुछ हरियाली है बाहर--

और मकान के ऊपर कलर नहीं हुआ है अभी मकान के ऊपर सिर्फ सीमेंट --

यह लोग छत की मरमत कर रहे हैं दोनों लोगोंने अपने सरपे दो पीले वाली की टोपी पहन रखी है ।

सभी लोगो ने अपना अपना पोस अलग अलग पोस में खड़े हुए है सभी --